और वहां उनकी टीचर दिख रहे है लगभग पांच बच्चे है वन टीचर है।

और यहां सैंटा क्लॉज अंकल भी है।

और यहां पर फाइव सिक्स लेयर चप्पल है।

यहां एक नदी ये है एक नदी है यहां पर बहोत ही गंदे पानी आ रहे है।

और पानी की ता बहोत ही दृश्य आ रही है ये पानी बहोत ही गंदा दिख रहा है और ये यहां ऊपर भी गाड़ी आता जाता है।

और दो पांडा भी हैं जो बहोत अच्छा--

और बहोत सारे लोग हैं लगभग दस बारह लोग हैं।

और बहोत ही अच्छा दिख रहा है ये बहोत बड़े बड़े बंगले है।

जो डेकोरेट कर रही हैं और जगह बहोत ही अच्छा लग रहा हैं बहुत सुंदर और बहुत बड़ी हैं ऊपर भी लगा हुआ हैं।

और यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये लोग बहुत शांति से पढ़ रहे हैं।

और यहां पर दो अंकल चल के चल रहे है। वह यहां भी मंदिर बोहोत ही बड़ी है।

और बैकग्राउंड में बहोत ही अच्छा ऑरेंज कलर लगा हुआ है।

दो लड़कियां दो लड़के हैं और ये अरेंज कलर के धुआ से कुछ निकर रहा है।

यहां पर एक अंकल बाहर में यहां बहोत सारी चौकी लगी है।

जो हमारे यहां ढाबा संबलपुर के पीछे--

और एक न पौधा भी है नारियल के--

बहुत बड़े बड़े फूल हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं।

और यहां बहोत ही अच्छी अच्छी फूल हैं और साइड में बहोत सारे गमले भी हैं अच्छा दिख--

और इसके ऊपर गोड ऊपर म मुड नीचे हाथ नीचे करके बैठा है और यहां पे चारों ओर बहोत ही साफ सफाई दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक है बड़े-बड़े फूड्स हैं और यहां पर बहोत से खाने वाली चीज है और बहोत अच्छी-अच्छी चीज है यहां पर कुकी --

चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सारी चीज हैं।

एक अंकल उनको बेच रहे हैं उनके पीछे भी बहोत सारी मछलीया है आगे भी बहोत सारे मछलियां हैं।

वहां एक रुमाल हैं बहोत अच्छा जगह है और ये--

ये बहोत ही बच्चा लग रहा हैं बहोत सुंदर लग रहा हैं।

और यहां पर पेड़ भी है और ये मार्बल की नीचे बहोत ही गाड़ी ब्लू कलर का है बहोत अच्छा--

बहोत ही अच्छा लग रहा है यहां पर बहोत सारे लोग हैं और ये लोग खा रहे है अंदर भी होटल के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं बहोत अच्छे--

यहां पर चार पांच बच्चे हैं जो कंप्यूटर क्लास कर लिए लग रहा है।

और यहां एक बाइक दर्पण फोकस कर रहा है और यहां पे बहोत बड़ी लाइट बहोत सारी कार है और बहोत सी शॉप है।

यहां पर बहोत सारी सामान है किराना स्टोर है।